यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है| इस बिल्डिंग का मेन गेट खुला हुआ है जो लाल कलर का है।

ये एक गुफा जैसा एरिया नजर आ रहा है| इस एरिया में पत्थर का गुफा है ।

यहां पर मुझे बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस बिल्डिंग के गेट खुले हुए हैं और यहां पर मुझे रास्ता भी दिखाई दे रहा हैं।

यह एक हॉल हे । और इस हॉल मे प्रोजेक्टर लगा हुआ है।

ये एक मस्जिद है इस मस्जिद का गेट खुला हुआ है।